यह डेकोरेशन हो रहा है यहाँ पे कोई फंक्शन होना है फूलों के अलग-अलग रेड व्हाइट ऑरेंज येलो ---

अ ये एक ऊपर से पानी गिरता हुआ दिख रहा है कुछ एक झरने जैसा है और थोड़ा सू सूरज की रोशनी आ रही है और एक नीचे पेड़-पौधे लगे हुए हैं एक बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं जिनमें पानी गिर रहा है।

और एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है और की साइड में खड़ा हुआ है ठेला यह--

अ एक ब्रांडेड कपड़े का शॉप है ये जहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ रेड कलर से पेंट है।